इसके बाहर बहोत सारे रिक्शा खड़े है लाल रंग का नीले रंग का एक टिने का शेड भी है नीले रंग का --

हरा भरा घास का मैदान है जो कि बहोत ही सुंदर दिख रहा है।

एक लाल रंग की साइकल भी है एक बच्चा भी मैदान में खेल रहा है बहोत सारे लोग नीचे बैठे हुए है।

वेज एंड नॉनवेज रेस्टोरेंट है जिसके बाहर दो तीन आदमी खड़े हैं।

इस तस्वीर में जो फोटो है यह एक शादी फंक्शन का फोटो है।

बहोत सारे लोग यहां खड़े हुए हैं एक पानी का फव्वारा भी है जो की सफेद रंग का है।

बहुत सारी लड़कियां नीचे योगा कर रही हैं।

इस तस्वीर में जो फोटो है यह एक क्लासरूम की है।

अ बिल्डिंग का कलर पीले और सफेद रंग का है। बिजली के वायर भी गए हैं बिजली के खंभे भी लगे हुए हैं।